काफी सारे कैबिन बने हुए हैं।

यह एक नदी है नदी में काफी सारा पानी है दूर में हरे-भरे --

सीढ़ी है नदी के किनारे में जिस पर एक व्यक्ति खड़ा है जो की जैकेट पहना है।

यह एक पर्यटन स्थल है बड़ा सा --

किनारों पर हरियाली छाई हुई --

इस मॉल का नाम है अमेजिंग मेंस पॉइंट जहाँ पे --

ने में कांच लगा हुआ है --

इसमें बहुत सारी छात्राएं जो हैं --

और यह एक परियोजन कर रही हैं।

और नदी के ऊपर पूल बनी हुई है।

लोहे की ल फूल है --

और दूर में पहाड़ है जिस पर काफी सारे वृक्ष है हरे-भरे--

और दो तार है जो लाल रंग में है।

बिल्डिंग है हरे-भरे पेड़ है।

जिसपे हरे-भरे पेड़ है।

तीन का शेड है प्लेटफार्म के ऊपर --

चेयर और मेज लगे हुए हैं।

है तो मिस्त्री है जो --

और यह पिलर की ढलाई कर रहे हैं।

यह एक युवक जो है।

और घर दिखाई दे रहे हैं।

अंदर में भी खड़े हैं रात्रि का समय हैं।

गोल्डन कलर में दो प्रतिमा बनी हुई है।

काफी सारे हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं छोटे-बड़े --

पीछे भी एक युवक है।

यह एक मछली की दुकान है।

काफी तरह-तरह के किताब रखे हुए हैं और बाहर एक व्यक्ति शर्ट पैंट पहना हुआ है जो कि किताब की खरीदारी कर रहा है।

दूकान है जिसमें एक युवक जो है वह पगड़ी पहना हुआ है शर्ट पहना हुआ है पेंट पहना हुआ है और यह--

और काफी सारे मछली रखे हुए हैं तरह-तरह के मछली --

ये दुकान का नाम है अंकुश आलू एवं अनाज भंडार।

यह एक शोरूम है और यह शोरूम में कांच है शटर भी है।

और झरने के जैसा पानी आ रहा है एक पूल है जो कि ब्लू रंग का है।

कांच के कांच के सोकेश --

यह एक कैफे का तस्वीर है जिसमें --

यह विद्यालय का तस्वीर है जिसमें काफी सारे विद्यार्थी जो है अपने-अपने स्थान पर --

बहुत ही प्यार से बैठे हुए है और अपना-अपना कार्य कर रहे है।

फुहारा में में लाइट लगा हुआ है जो की ब्लू लाल पीले हरे बैगनी काफी कलरफुल फुहारा है।